फोटो में दो कार खड़ी है एक कार का कलर सफेद है नीली बत्ती है एक स्कॉर्पियो सफेद और काली कलर की।

दो मंजिले की मस्जिद है मीनार खड़ी है |

है सोलर लाइट के लिए लगा है |

इसमें एक बच्चा बैठा है | बंदे का बंदे दो बंदे मास्क लगाए हैं |

दो कार है | एक काली कार एक सफेद कार |

इसमें कुल बारह हिरण हैं | दस हिरन इधर आसपास हैं | एक हिरन उस पेड़ के पास बैठे हुई है |

ये बहोत ही पुराना डेंप है।

नूगल्स का पोस्टर लगा हुआ है।

बीच में कच्ची कलर या लाल कलर की --